और एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

पेड़ है उसमें लगे हुए और एक आदमी भी खड़ा हुआ है और उसमें बोर्ड भी रखा है।

एक औरत जीने पे चढ़ रही है।

यहां पे बहुत बड़ा सा ग्राउंड है।

इधर उधर गाड़ियां भी चल रही है रोड पे।

आइसक्रीम का ठेला खड़ा हुआ है।

यहां पे बहोत सारी चेयर पिंक कलर की पड़ी हुई है।

बहुत सारे फ्रूटस रखे हुए हैं।

टेबल पे दो गिलास स्टील के रखे हुए हैं।

तिरंगा लगा हुआ है बहुत बड़ा सा।

खंभे लाइट के लगे हुए हैं खूब सारे तार हैं उसके--

एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है।

ब्लैक कलर के खंभे भी लगे हुए हैं।

ग्रीन कलर के हैं डार्क ग्रीन कलर के पेड़ हैं।

यहां पे कढ़ाही है ब्लैक कलर की।

जलेबियों का कलर थोड़ा थोड़ा ऑरेंज है।

यहां पे वेटर भी बहोत सारे खड़े हुए हैं।

बहुत टाइल्स अच्छे अच्छे लगे हुए हैं।

कलरफुल लाइटे लगी हुई हैं।

जीने भी हैं जाने के लिए अंदर।

अच्छी हरि हरि घासें हैं।